कुछ फर्नीचर रंगे हुए हैं और कुछ अभी भी लकड़ी के रंग के हैं।

यहां पे एक लड़का भी दिखाई दे रहा है जिसने येलो कलर के टी_शर्ट पहनी हुई है।

इस तस्वीर में एक कुआं दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में ढेर सारे बच्चों के कपड़े दिखाई दे रहे हैं जो हैंगर के थ्रू टांगे गए हैं।

इस तस्वीर में ढेर सारे लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में ढेर सारे लोग योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे अलग सबने अलग अलग मैट लिया हुआ है।

यहां पे कुछ प्लास्टिक भी रखे हुए हैं।

यहां पे पीछे में ढेर सारे और भी सामान रखे गए हैं इस रूम में।

यहां पे एक और गाड़ी दिखाई दे रही है जो प्लेन की मदद कर रही है।

उसके पास साइकिल चलाने वाली मशीन दिखाई दे रही है जो येलो येलो कलर में है उसके बगल में भी ब्लैक कलर के कुछ मशीन दिखाई दे रहे हैं और दिखने में यह किसी जिम जैसा लग रहा है।

यहां पर बड़े बड़े बॉक्सेस भी रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन में ढेर सारे फूल लगाए गए हैं।

यहाँ पे सब ने अलग अलग कलर के ड्रेस पहने हैं कुछ ने येलो रेड ब्लू कलर के--

इस पे काडरी रेफ्रिग्री एक्शन लिखा हुआ है और यहां पे नीचे में कुछ डिजाइन भी बनाए हुए हैं।

छोटे छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और ट्रेन के पास से ढेर सारी लाइन भी गुजरती हुई दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे कुछ लेबर कम कर रहे हैं वे कुर्सी भी रखी गई हैं।

दुकान के पास ढेर सारे सामान रखे गए हैं और बाहर में बड़े बड़े मैट भी लगाए गए है जो गोले के रैक में है।

यह किसी बैडमिंटन खेलने की जगह लग रही है।

य कुछ जंगल इलाका है क्योंकि यहां ढेर सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इसमें व्हाइट ग्रीन और य ब्लैक कलर के चीजें रखी हुई है।

पासी में दो डोलची रखी हुई है एक ब्लू कलर की एक रेड कलर की।

यहां पे ढेर सारे और भी सामान दिखाई दे रहे हैं कुछ बिस्कुट जो अलग अलग रैकों पे रखे हुए हैं।

रूम व्हाइट कलर का है और नीचे में फर्श का भी डिजाइन काफी यूनिक बनाया गया है।